यह पिक्चर एक दुकान की है जहां पर दीवाल का कलर नीला है।

ऊपर व्हाइट कलर की लाइट जल रही है।

यह फोटो एक मेट्रो स्टेशन के अंदर की है।

नाव पानी के किनारे लगी हुई है।

इस पिक्चर में एक बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके गेट का कलर काला है।

खंभे पर व्हाइट कलर की लाइट जल लही है।

घर के सामने तार लटक रहे हैं।